और यहाँ एक पाइप भी लगा हुआ है और हमे ब्लू कलर का आसमान भी दिखाई दे रहा है।

हमारे सामने यहाँ पर दूकान नज़र आ रही है दूकान में अलग अलग तरह की चीजे नज़र आ रही है यह पर क्यारट भी नज़र आ रहा है यहाँ पर हमें बहुत कुछ प्रकारो की चीजे भी नज़र आ रहा है एक लड़का बैठा हैब्लू कलर की ग्रीन कलर की ब्लू कलर की कपड़े पहन कर उसने ब्लैक कलर की चप्पल भी पहनी है।

यहां पे एक रिक्शा नजर आ रहा है वह रिक्शा पे चपे भी नज़र आ रहे हैया और यहां पर एक बिल्डिंग पर भी नजर आ रही है।

यह देखिए यहाँ पर हमें एक ट्रक दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें एक खम्बा दिखाई दे रहा है टावर टाइप में हमें यहाँ पर एक टंकी दिखाई दे रही है

यहां पे बहुत सारी लड्किया दिखाई दे रही है यहा पर हमे एक दिवाल दिखाई दे रही है यहा पर हमे छोटी बडी सब प्रकार की लड्किया दिखाई दे रही है यहां पे हमे --